उसके पीछे जो व्यक्ति बाघ पर बैठा है।

और खरीदने का भी बुक है एक बुक सेलर जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहन रखी है।

और व्हाइट पैंट में खरा हुआ है और एक बाइक्स दो साइकिल्स खरी है।

सामने एक नदी बह रही है नदी के किनारे पर--

कुर्सियों पर बैठे हुए हैं कुर्सियां रेड कलर की है लेकिन उसे व्हाइट कलर के कपड़ों से ढक दिया गया है।

यह किसी टोल गेट का गेट दिख रहा है यहां पर तीन ट्रके दो बसें पास हो रही है ट्रेल गेट पर--